बहोत बनियान है टी शर्ट है। अ- टी शर्ट है। टी श- और यहाँ पे एक --

अंदर मेला लगा हुआ है। बहोत सारी भीड़ दिख रही हैं वहां पे ।

और एक खंभा है जिसमें से वायर निकली हुई है। गाड़ी खड़ी हुई है।

पीछे कपड़े टंगे हुए शर्ट है पैंट है और कोट पैंट ट- टंगे हुए है।

और कुर्सी रखी हुई है| मंदिर का कलर येल्लो कलर का है और उसके अन्दर भी एक ऑरेंज कलर का गेट लगा हुआ है जो बहोत ही सुन्दर लग रहा है |

और इस सजीवनी हॉस्पिटल का जो बोर्ड है वो ब्लू कलर का --

यहाँ पे लोग सबारी कर रहे हैं। नाव में एक लोग भी खड़ा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग है। लेडीजे बैठे हुए है जो कलरफूल साड़ियों में है। चर्च का जो दीवार का कलर है--